एक दीवाल है जोकि पत्थर का दीवाल है और वहां जमीन पर भी बहुत सारा पत्थर है।

और ब्लैक कलर का कुर्सी इस साइड लगा हुआ है और वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है।

एक गुलाबी कलर का बोर्ड है वहां पर एक मैडम खड़ी है जो की सफेद कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

और उसके साइड में एक कुर्सी है और वहां पर एक पत्ता है और वहां पर ग्रिल लगा हुआ --

और इस साइड में भी एक बोलेरो खड़ा है वहां पर एक हेल्मेट रखा हुआ है टूटा हुआ हेलमेट --

इस साइड में एक दीवाल पर पोस्टर लगा है।

और वहां पर बहुत सारा बेलुम बैलून लगाया है।

और बाहर में साड़ी टांगा हुआ है उपर में भी साड़ी टांगा हुआ है और एक साड़ी के अन्दर में एक छोटा सा पोस्टर है साड़ी का ही--

ऊपर में एक मोबाइल का छोटा सा पोस्टर टंगा हैऔर वहां पर दुकान में एक टेबल है।

और वहां पर दो आदमी भी है और एक छोटा सा दुकान है।

एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। जिसके बाहर में एक सफेद कलर और नीला कलर का पोस्टर लगा हुआ है।

और दुकान के बाहर में राइट साइड में एक पोस्टर लगा हुआ है और वहां पर एक आदमी खड़ा है।

छोटा सा मोबाइल रखा हुआ है बाजा रखा हुआ है और बहुत सारे सामान रखे हुवे है एमरजेंसी रखा हुआ है।

और उसके बगल में भी बहुत सारे पेड़े लगे हुए हैं हरे हरे पेड़ --

और नीचे में बहुत सारा पेड़ और पत्थल है और वहां पर बहुत सारा पानी है। उसके पीछे करके बहुत बड़ा एक मैदान है जहां पर पेड़ है ।

और उसके राइट साइड मे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ हैजिसमें एक लड़का और लड़की का फोटो छपा है।

सामने में ही दीवाल पर भी दो पोस्टर लगा हुआ है और एक गेट लगा हुआ है।

एक कपड़ा का दुकान है जहां पर बहुत सारा कपड़ा है।

और शीशा का लगा हुआ है वहां पर एक रेड कलर का कुर्सी है और एक आदमी वहां पर खड़ा है।

और बहुत सारे फल है और ऊपर में केला टंगा हुआ है।